एवं बहुत सारे पुस्तक भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य किसी जिम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में दीवाल पे लगी हुई दो फ्रेम दिखाई दे रही है।

एक पर अंग्रेजी से और दूसरे पर हिंदी से लिखी हुई दिखाई दे रही है।

यह दृश्य किसी मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

साइट पर एक इनवर्टर भी दिखाई दे रही है।

यह दृश्य किसी स्कूल का दिखाई दे रहा है।

पेड़ के पास एक औरत फोन पर बात करती हुई दिखाई दे रही है।

एक मर्द उस खेत से फूल तोड़ रहा है।

खेत के फूल पीले रंग की दिखाई दे रही हैं।

इसके सीलिंग पर मरकरी और फैन लगे हुए दिखाई दे रहे ।

इस चित्र में एक औरत दिखाई दे रही है।

उसके पीछे की दीवाल आधी गुलाबी और आधी ब्लू रंग की दिखाई दे रही है।

इसमें एक काली रंग की गाड़ी भी दिखाई दे रही है।